एक जाना पर्स टांग--

खीर की है ब्लैक कलर की नसेनी है और लाइट वगैरह--

जैसे कि मैं देख सकती हूं यहां पर कुछ--

जैसे कि मैं देख सकती हूं यहां पर बहुत सारे फल हैं और हरा रंग है और ये--

जैसे कि मैं देख सकती हूं यहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंग है और एक खरगोश और--

लाइट वगैरह और बहुत बड़ी टीवी लग रही है और कुछ लोग देख रहे हैं पर्दे हैं।

जैसे कि मैं देख सकती हूं कुछ गमले रखे हैं हरी हरी धोगा और--

पल्टी का घर है और कुछ पेड़ भी लग रहे हैं और एक बोट है और जाली खिड़की गैट वगैरह दूगा--

जैसे कि मैं देख सकती हूं--

यहां पर कीर्तिंग सुन रहे हैं कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं।

जैसे कि मैं देख सकता हूं यहां पर बहुत बड़ी दुकान है।

और सड़क भी है और कुछ पेड़ भी लगा है।

एक लेडिस खड़ी है और बहुत सारा सामान भी रखा है।

जैसे कि मैं देख सकती हूं नेट के बगल में एक लड़का खड़ा है और कुछ पुतला पुतली है और कुछ टी_वी वगैरा और--

मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे लोग कुछ बना रहे है मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बच्चों लोग कुछ बना रहे हों और जाली भी है।

जैसे कि मैं देख सकती हूं यहां पर बहुत सारे चेहर रखे हैं और--

बहुत सारे लोग हैं और ऐसा लग रहा है पार्टी चल रही है और कुछ लोग भी हैं और बला--

कुछ लिखा है और उसके पीछे एक घर बन रहा है और बहुत सारे पेड़ लग रहे हैं और हरी भरी धूवा--

जैसे कि मैं देख सकती हूं--